ओर बड़ा बड़ा पोधा सब हरा हरा दिख रहा है यह पर घर जैसा डिजाइन बनाया हुआ है दीवार घिरा हुआ --

यहां पर जाली से घिरा हुआ है पार्क दिख रहा है पार्क के अंदर --

रखा हुआ है दो दो टायर रखा हुआ है मिट्टी दिख रहा है आसमान दिख रहा है आसमान मे बादल छाया हुआ दिख रहा है।

यह पर दीवार दिख रहा है बालू गिटी सब दिख रहा है।

यहां पर ईटा दिख रहा है यहां पर पाइप सब दिख रहा है वाइट कलर का पाइप है इसमें लगा हुआ --

ओर आदमी सब है यहां पर पौधा सब है पीछे में बड़ा - बड़ा पौधा है --

यहां पर शादी का तैयारी हुआ है।

और यहां पर पंडाल लगा हुआ है वाइट कलर का कपड़ा है ऊपर में और आसमान दिख रहा है वाइट कलर का।

इस बल पत्ता हरा हरा दिख रहा है और लाइट लगा हुआ है।

बादल छाए हुए हैं और पौधा सब यहां पर --

आदमी ठहरा हुआ है और फोटो खिंचाने का स्माइल दे रहा है उसमें नंबर प्लेट दिख रहा है बॉल सब दिख रहा है।

एक गो एम्बुलेंस यहा दिख रहा है व्हाइट कलर का मोटरसाइकिल सब लगा हुआ है बोहोत सारा --

कुर्सी सब दिख रहा है मिया बासा दिख रहा है।

एक सा दिख रहा है डबा में समान रखा हुआ दिख रहा है वो पैम्पर्स दिख रहा है शीशा दिख रहा है काउंटर दिख रहा है।

कान के अंदर शटर लगा हुआ दिख रहा है लोहा दिख रहा है बॉल --

इस पर हरा लाइट बरते हुए दिख रहा है पोधा सब बरा-बरा दिख रहा है --